एकबेड बिछा हुआ है।

ये एक मस्जिद की--

ये एक अअबड़ी सी मस्जिद की पिक्चर है।

ये एक बड़े से आइसक्रीम की दुकान है।

एक कपड़ों की दुकान है।

और एक मूर्ति कपड़े पहने हुए खड़ी हुई है।

टंगी हुई नजर आ रही हैं।